इसे देखने पर ये कोई विद्यालय या फिर कोई रहने का स्थल नजर आ रहा है परंतु ये कौन स्थल है ये पता नहीं चल पा रहा है।

इन सब मिट्टी से बनी चित्र को टेराकोट कहते हैं|

आकर्षक बनाने के लिए यहां पर पुरुष जाति के लोग जाते हैं ताकि वो और अच्छा --